इस फोटो में एक मेडिसिन शॉप है मेडिसिन शॉप का नेम है देव दवाखाना --

देखिए सा साईट पर कुछ लड़के वहाॅं पर उसको देख रहे हैं आसमान नीला कलर का है।

कार का कलर व्हाइट है। बाइक का कलर ब्लैक है और स्कूटी का कलर है व्हाइट ।

इस फ़ोटो में एक कोस्टर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जहाॅं चल रहा है उसके पीछे एक बड़ा पहाड़ है।

ये एक बस का फोटो है। बस के अंदर अ बहुत सारे सीट पड़ा हुआ है। सीट का कलर है ब्लू कलर ।